उसके बाद साइट दूर-दूर में पूरा कोहरा-कोहरा लग रा --

जी जो छत के ऊपर से इस पिंक फोटो को लिया गया है जिसमें की ए--

इस पिक्चर में एक ये एक कपड़े का दुकान है।